खेलने वाला बगान है जिसमें बच्चा सब खेल रहे हैं। एक पतंग काट रहे हैं एक नार छू रहे।

चार लरकी है जो बना रही है और भी बना रही है एक लड़की इधर कर रही है एक लड़की --